यहां एक बड़ा सा टेबल दिख रहा है और ब्लू कलर का उसमें मेनू चार्ट है।

कुछ ठंडे की बोटल कुछ सॉस की बोटल और उसके ऊपर एक आटे का पैकेट रखा हुआ--

और बीच में से एक रास्ता जाते हुए दिख रहा है उसके चारों तरफ हरियाली छोटी-छोटी से हरी हरी घास है।

सामने मे ये पानी का झरना दिख रहा है। पानी का झरने से पानी बहता हुआ नीचे की ओर आ रहा है नीचे की ओर पानी खट्टा हो गया है।

डैम जैसा कुछ दिख रहा है उसके नीचे पानी दिख रहा है सामने में टाइप का कुछ बना हुआ है यहां पर दो काले कलर के खंभे--

एक बड़ा खंबा एक छोटा खंबा उसके सामने एक और काला कलर का खंबा जैसा कुछ है।

सामने एक स्टेज बना हुआ है और अ बहुत सारी लड़कियां आ रही है और उनके हाथों में तोहफे भी है एक--

बच्चियां भी सामने दिख रही हैं और और भी बच्चियां स्टेज पर दिख रही है जिनके हाथों में तोहफे है।

गेट के बाहर में एक व्हाइट कलर का कार है।

जो की या और एक सामने में दीवार है जो कि ग्रीन कलर की है सामने कुछ मीटर बॉक्स लगे हुए आसपास में बहुत सारे लोग हैं कुछ कैफे मे मास भी है।

सामने में एक लड़का खड़ा दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का शर्ट में है और उसके काले काले बाल है।

और कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं उस सामने एक रास्ता जाते हुए दिख रहा है।

ये एक कुछ मशीन टाइप का रॉड टाइप का बना हुआ है उसके नीचे प्लास्टिक के बोतल टंगे हुए ऊपर में एक टाइप का है जिसमें से--

आ एक रोड जा रहा है और आसपास में कुछ घर टाइप का दिख रहा है।

उसके सामने एक हरा कलर का पेड़ है उसके बगल में म _स _टू इवन टाइप का कुछ--

और ये सामने में एक क्विक सर्विस प्वाइंट करके कंप्यूटर सर्विस है और सर्विस सेंटर टाइप का कुछ लग रहा है।

और पीछे जो सूरज है वो पूरा लाल दिख रहा है आसमान में लाल सूरज--

सामने में एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है फूड अड्डा दा होम --

या कटोरी में कुछ मछलियां दिख रही है मछलियों के--

सूट टाइप के कुछ देख रहा है बहुत सारे मछलियां है यहां पर--

सामने में कुछ एक बिल्डिंग टाइप का बना हुआ है और उस बिल्डिंग में सीढ़ियां है।

और सामने में कुछ लेडिस खड़ी है जो की साड़ी में है एक व्हाइट कलर की साड़ी में है।

ये कोई स्टेशन लग रहा है आसपास में स्टेशन रेडिश कलर टाइप का कलर है स्टेशन का आसपास में--

ये कोई मंदिर का मंदिर जैसा दिख रहा है बड़ा सा मंदिर है नीचे में--

और एक लेडिस दिख रही है जो कि जिसके चेहरे पर मार्क्स है।

ये कुछ चट्टानें टाइप कि हैं जो कि बहुत ऊंची बनी हुई है व्हाइट कलर की चट्टान दिख रही है आसपास में बहुत--

ये क्लासरूम की पिक्चर लगती है।

आ आ ऊपर एक मैं व्हाइट कलर का फैन सामने दो विंडो है और एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें कुछ--

टाइप का है और टेबल बेंच है बच्चों के बैठने के लिए।

एक बड़ा सा वृक्ष है उसके नीचे सब कोई प्रणाम कर रहे हैं प्रेयर कर रहे हैं सब कोई आ ऋषि-मुनी के कपड़े में है।

ये कोई दुकान लग रहा है सामने में एक व्हाइट कलर का ऐ_सी है और एक कैमरा भी व्हाइट कलर का है कुछ दुकान में सामान रखे हुए जैसे की माउस कीबोर्ड --

आ जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उसके छोटे-छोटे आ ये रखे हुए कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान लगता है।

जैसा ही कुछ है अ अरेबिक में कुछ ऊपर में लिखा हुआ है।

एक सामने मे एक लड़का खड़ा है जोकि उनका टाइ पहना हुआ है शर्ट पहना हुआ है ऊपर से एक स्वेटर डाला हुआ है और एक स्कार्फ टाइप का कुछ लिया हुआ है उसके गले मे --

आ आ कुछ रिबन टाइप का उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा है जो की--

वो जो लड़का है वो अपना खुद का सेल्फी ले रहा है उसका सेल्फी का जो इमेज है वो अपने पीछे का गिलास में भी दिख रहा है।

और इस सामने में सीमेंट का कुछ बना हुआ है डिजाइन किया हुआ उसके सामने एक आदमी अपना पॉज देते हुए--

और हरे कलर के हैं।

ये एक झरना जैसा दिख रहा है पीछे हरा हरा पेड़ है और एक पत्थर बहुत बड़े पत्थर जैसा है उसके ऊपर से--

जहां पर पूजे एक फल पूजा का फल--

चढ़ाया हुआ है केला संतरा ये सब अह ऊपर में बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है बैलून और--

कपड़े से आ पूरा पंडाल टाइप का--

कराटे ड्रेस जो होता है और कुछ कराटे का यह कर रहे हैं।